के टच में सेटिंग कन्फिगर करने पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि प्रशिक्षण के स्तर को कैसे बदलें
टाइपिंग गति को व्यवस्थित कैसे करें
शॉर्टकट कीज़ को कन्फिगर कैसे करें
टूलबार्स कन्फिगर कैसे करें
टाइपिंग मेट्रिक्स कैसे देखें
यहाँ हम उबंटू लिनक्स 1110 पर के टच 171 का इस्तेमाल कर रहे हैं
चलिए के टच खोलें
हम लेवेल 1 पर हैं
अगले स्तर पर चलते हैं जो 2 है
प्रशिक्षण के स्तर को 2 पर बढ़ाने के लिए लेवल फील्ड के आगे ऊपरी त्रिकोण चिह्न पर क्लिक करें
ध्यान दें क्या होता है जब हम स्तर को 2 में बदलते हैं
टीचर्स लाइन के अक्षर बदलते हैं
न्यू कैरेक्टर्स इन थिस लेवेल फील्ड के अंदर दर्शाए जा रहे नये कैरेक्टर्स को देखें
यह भी बदल गये हैं
यह अक्षर हैं जिनका चुनित स्तर पर अभ्यास करना है
अब टाइपिंग शुरू करें
अब एक अक्षर टाइप करते हैं जो टीचर्स लाइन में नहीं दर्शाया गया है
स्टूडेंट लाइन लाल में बदल जाती है
और आप क्या देखते हैं
करेक्टनेस फील्ड में दर्शाया जा रहा प्रतिशत घटता है
बैकस्पेस दबाएँ और गलती मिटाएँ
अबTraining ऑप्शन्स को निर्धारित करना सीखते हैं
ट्रेनिंग आप्शंस क्या हैं
ट्रेनिंग आप्शंस का इस्तेमाल हम टाइपिंग गति और विशुद्धताटाइपिंग विशुद्धता का प्रतिशत के मापदंडों को बदलने के लिए करते हैं
किसी विशिष्ट स्तर पर टाइप की जाने वाली लाइनों की संख्या को भी हम अपनी रूचि के अनुसार निर्धारित कर सकते हैं
मुख्य मेन्यू से सेटिंग्स चुनें और कॉन्फिगर क्टच पर क्लिक करें
कॉन्फिगर - क्टच डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
कॉन्फिगर - क्टच डायलॉग बॉक्स के बाएँ पैनल से ट्रेनिंग आप्शंस पर क्लिक करें
दायाँ पैनल अब विभिन्न ट्रेनिंग आप्शंस दर्शाता है
टाइपिंग स्पीड करेक्टनेस और वर्कलोड के लिए ऊपरी सीमा निर्धारित करें
लिमिट्स टो इनक्रीज आ लेवेल के नीचे टाइपिंग स्पीड को 120 कैरेक्टर्स पेर मिन्यूट करेक्टनेस को 85 अंततः वर्कलोड को 1 निर्धारित करें
इसका मतलब है कि हमें प्रत्येक स्तर पर केवल एक लाइन पूरी करने की आवश्यकता है
हम फिर स्वतः ही अगले स्तर पर चले जाएँगे
यदि आप एक स्तर पूरा करके ही अगले स्तर पर जाना चाहते हैं तो कंप्लीट व्होल ट्रेनिंग लेवेल बेफोर प्रोसीडिंग बॉक्स को चेक करें
टाइपिंग स्पीड और करेक्टनेस के लिए निचली सीमा को निर्धारित करें
लिमिट्स टो डिक्रीज आ लेवेल के नीचे टाइपिंग स्पीड को 60 कैरेक्टर्स पेर मिन्यूट और करेक्टनेस को 60 पर निर्धारित करें
रिमेंबर लेवेल फोर नेक्स्ट प्रोग्राम बॉक्स को चेक करें
एप्ली पर क्लिक करें
ओक पर क्लिक करें
बदलाव जो हमने किये हैं तभी लागू होंगे जब हम नया सेशन शुरू करेंगे
स्टार्ट न्यू सेशन पर क्लिक करें और कीप करेंट लेवेल को चुनें
फिर से टाइप करना शुरू करें
ध्यान दें कि शुरू में स्पीड 0 है
जैसे ही हम टाइप करते हैं यह घटती या बढ़ती है
पौसे सेशन पर क्लिक करें
जब हम पॉज़ करते हैं टाइपिंग स्पीड उसी गिनती पर रहती है
टाइपिंग फिर से शुरू करें
जैसे ही स्पीड 60 से कम होती है ध्यान दें कि स्पीड के आगे लाल वृत्त पर चमकता है
यह दर्शाता है कि गति निचली सीमा जिसे हमने स्पीड के लिए 60 निर्धारित किया है उससे कम हो गयी है
अब संख्या 4 टाइप करें जो टीचर्स लाइन में नहीं दर्शाया गया है
स्टूडेंट्स लाइन लाल हो जाती है
परसेंटेज ओएफ थे करेक्टनेस भी कम हो जाता है
क्या आप टीचर्स लाइन में दिए हुए अक्षरों के समूह या अक्षर के बीच स्पेसेस देख सकते हैं
अब इस शब्द के बाद मैं स्पेस बार नहीं दबाऊँगा
स्टूडेंट्स लाइन फिर से लाल हो गयी है
इसका मतलब है कि स्पेसेस को भी ठीक से टाइप करना चाहिए
स्टूडेंट्स लाइन में एक पूरी लाइन टाइप करें और फिर Enter दबाएँ
लेवल 3 में बदल गया है
lलेवल 3 में क्यों बदलाऐसा इसलिए क्योंकि हमने वर्कलोड को 1 में निर्धारित किया है
इसलिए जब हमने लेवल 2 की एक लाइन पूरी कर ली और Enter दबाया हम अगले स्तर पर चले गये
ध्यान दें कि टीचर्स लाइन में नये अक्षर प्रदर्शित हैं
क्या आप अपने टाइपिंग सेशन के प्राप्तांक जानना चाहते हैं
लेक्चर स्टैटिस्टिक्स पर क्लिक करें
ट्रेनिंग स्टैटिस्टिक्स डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
टैब्स पर क्लिक करें और देखें कि यह प्रत्येक क्या दर्शाते हैं
करेंट ट्रेनिंग सेशन पर क्लिक करें
यह जनरल स्टैटिस्टिक्स का विवरण देता है टाइपिंग की गति टाइपिंग की विशुद्धता और अक्षरों का विवरण जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है
करेंट लेवेल स्टैटिस्टिक्स टैब करेंट ट्रेनिंग सेशन टैब में दर्शायी गयी जानकारियों की ही तरह जानकारियाँ देता है
मॉनिटर प्रोग्रेस टैब आपके टाइपिंग की प्रगति का चित्रीय विवरण देता है
इस डायलॉग बॉक्स को बंद करें
आप खुद के शॉर्ट कट कीज़ भी बना सकते हैं
शॉर्टकट कीज़ क्या हैं
शॉर्टकट कीज़ दो या अधिक कीज़ का समूह होती हैं जिन्हें मेन्यू ऑप्शन्स की जगह कीबोर्ड से दबा सकते हैं
लेक्चर स्टैटिस्टिक्स को देखने के लिए शॉर्टकट कीज़ को कन्फिगर करें
मुख्य मेन्यू से सेटिंग्स कॉन्फिगर शॉर्टकट्स पर क्लिक करें
कॉन्फिगर शॉर्टकट्स - क्टच डायलॉग बॉक्स दिखता है
सर्च बॉक्स में लेक्चर स्टैटिस्टिक्स प्रविष्ट करें
लेक्चर स्टैटिस्टिक्स पर क्लिक करें कस्टम चुनें और Noneपर क्लिक करें
आइकन इनपुट में बदल जाता है
अब कीबोर्ड से SHIFT और आ कीज़ को एक साथ दबाएँ
ध्यान दें आइकन अब अक्षर ShiftA प्रदर्शित करता है
ओक पर क्लिक करें
अब Shift और आ कीज़ को एक साथ दबाएँ
ट्रेनिंग स्टैटिस्टिक्स डायलॉग प्रदर्शित होता है
बाहर जाने के लिए क्लोज क्लिक करें
के टच आपको टूलबार्स को कंफिगर करने की अनुमति देता है
मानते हैं कि हम क्विट क्टच कमांड को आइकन के रूप में दर्शाना चाहते हैं
मुख्य मेन्यू में सेटिंग्स पर क्लिक करें कॉन्फिगर टूलबार्स पर क्लिक करें
थे कॉन्फिगर टूलबार्स - क्टच डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
बाएँ पैनल में ऑप्शनों की सूची से क्विट आइकन चुनें
इसपर डबल क्लिक करें
आइकन दायें पैनल में खिसक जाता है
एप्ली पर क्लिक करें और फिर ओक क्लिक करें
क्विट आइकन अब के टच विंडो में प्रदर्शित होता है
इसी के साथ हम के टच पर इस ट्यूटोरियल के अंत में आ चुके हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि कैसे अभ्यास स्तर को बदलें टाइपिंग की गति और विशुद्धता पर निगरानी कैसे रखें
हमने कीबोर्ड शॉर्टकटों और टूलबार्स को कन्फिगर करना भी सीखा
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है
कॉन्फिगर क्टच के नीचे वर्कलोड को 2 में बदलिए
कंप्लीट व्होल ट्रेनिंग लेवेल बेफोर प्रोसीडिंग बॉक्स को चेक करें
अब एक नया टाइपिंग सेशन शुरू करें और टाइपिंग का अभ्यास करें
अंततः अपने लेक्चर आंकड़े जाँचें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें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
यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड़ करके भी देख सकते हैं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
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उनको प्रमाण पत्र भी देते हैं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
इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है httpspoken tutorialorgNMEICT Intro आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आप से विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद